एक दादा सामने से गुजर रहे हैं स्कूटी है एक बाइक हैलकड़ियां है रोड़े है खंभा है।

बड़े बड़े आजु- बाजू झाड़ नजर आ रहे है एक साइकिल भी दिख रही है ऊपर खुला आसमान है खिड़कियाँ है दरवाजे ह ।

चेयर रखी हुई है ऊपर सुनहरी चमचमाती हुई लाइटिंग दिख रही है।

एक बाइक खड़ी हुई है थैली टंगी हुई है ऊपर लाइट जल रही हैयहा सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है।

यह एक बड़ा सा गेट है ब्लैक कलर काऔर ऊपर गौतम बुद्ध यू.पी.बी.टी.आई.टी. आई लिखा हुआ है।